फ्लोर पे एक टॉय कार पड़ा है जिसका कलर ब्लू है।

ये एक नदी है जिसमें एक ब्रिज भी है। ब्रिज में बहोत सारे पिलर्स हैं।